इस तस्वीर में मुझे दो इंसाने दिखाई दे रही है।

दो इंसाने भी दिखाई दे रही है।

एक इंसान भी दिखाई दे रही है।

जिसने ब्रिंजल कलर का कपड़ा पहना हुआ है।

इस तस्वीर में मुझे एक मिठाई की दुकान दिखाई दे रही है।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

पीला से रंगा हुआ है।

बहुत सारे गाड़ियां भी दिख रही है।

इस तस्वीर में मुझे रास्ता दिखाई दे रही है।

एक इलेक्ट्रिक पोल्स भी है।

छोटा छोटा ग्रास भी दिखाई दे रही है।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

बहुत सारे लाइट भी दिख रही है।